बाहर एक छोटा सा बल्ब दिख रहा है लाल रंग का है ऊपर की छत दिख रही है जो सफ़ेद रंग की है लकड़ी का काउंटर बना हुआ है सा --

यहाँ पे हमको बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग जो हरे रंग की पुती है और यहाँ पीछे में आसमान दिख रहा है जहाँ पे हमको यहाँ पे मिट्टी के बने पत्थर के ख यहाँ पे हमको खम्भे दिखाई दे रहे हैं जिसकी यहाँ पे बाउंड्री खींची हुई है जमीन की मिट्टी दिखाई दे रही है बिल्डिंग जो सफ़ेद रंग की पुती है।

यहाँ पे हरे पेड़-पौधे लगे है एक बिजली का खंभा यहाँ पे दिखाई हमको दे रहा है।

हमको छोटा-सा गेट दिख रहा है बिल्डिंग का जिस पे जो हरे सफेद रंग का है।

चने की बिल्डिंग सफेद कलर की पुती है पेड़ दिखाई दे रहें हैं दिन का समय है और रोड दिख रही है।

यह एक बगीचा है बगीचे के बाहर सफेद रंग की पुती हुई है अंदर हमको पेड़ दिख रहे है जो हरे रंग के दिख रहे है।

उसके बगल में एक और बिल्डिंग दिख रही है जो नारंगी रंग रखी है एक सफेद कलर की बिल्डिंग हैं यह रात का समय दिखाई दे रहा है एक छोटा सा गेट का दरवाजा दिख रहा है बगल में शटर लगा हुआ है एक और हमको ऊपर छोटा-सा एक सफेद कलर का एक खिड़की दिख रही है।

यहाँ पे हमको एक मैदान का गेट दिख रहा है गेट की बिल्डिंग नील कलर की पुती है।